एक व्यक्ति जो कि गाड़ी की ओर है और गाड़ी को बना रहा है जिस जिसमें से दुसरे व्यक्ति जो कि दूसरी की तरफ देख रहा है।

इस दृश्य में एक खेत दिखाई दे रहा है खेत के चारों ओर हरियाली दिख रही है जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ दिख रहे हैं।

खड़ा हुआ हैं ओर मोबाइल देख रहा है और ऊपर में--

जो कि घर बनाते हुए दिख रहे हैं जिसमें से दो लड़के जो कि काम कर रहे हैं।

इस पिक्चर में एक विजन पब्लिक स्कूल दिखाई दे रहा है।

दिख रहे हैं और इस स्कूल के साइड में एक--

इस दृश्य में एक गार्डन दिखाई दे रहे हैं गार्डन में दो--

जी की खड़े हुए हैं सामने ऑडियंस है ये ऑडियंस इन बच्चों का परफार्मेंस देख रहे हैं।

सामने में दो व्यक्ति बैठे हुये हैं दोनों व्यक्ति चुकी एक दूसरे से बात कर रहे हैं।

इस बिल्डिंग की साइड में दो कार दिखाई दे रहे हैं उसके दूसरे तरफ--

आसपास में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर मैं तीन मंजिल का एक बिल्डिंग दिखाई दे रेहा--

इस पिक्चर में एक कपड़े का दुकान दिखाई दे रहे हैं कपड़े के दुकान में सोफे लगे हुए हैं।

सामने बहोत सारे चिप्स कुरकुरे--

पुष्पांजलि गिफ्ट गैलरी का शॉप दिखाई दे रहे हैं जिसमें बच्चों के लिए बहोत ही--

चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।